इधर पक्का लगे इधर भी गाछ है उधर भी गाछ है बहुत मस्त लगे उधर भी हरा-भरा बहुत मस्त लगे है।

सब हरा है इधरो हरा है सब पानी है उधर भी पानी है उधर भी पानी है उधर घर है उधर भी गाछ सब बढ़िया लागे देखे में पूरा लाल नियर

इधर दुगो आदमी खड़ा हेय एक आदमी इधर हेय पंखा लागल हेय ओकरा में लाइट लगल हेय उधर भी घर हेय इधर भी घर हेय उधर कमरा हेय।